ये एक बहोत खुबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पे कर रखा है जो एक सी पिक खीच रहा है और यहाँ पे बोहोत सारे --

जो हरा भरा है और एक बिल्डिंग वाइट कलर की और आसमान में--

ये एक गाय का तबेला है जहा पे एक--

ये एक सनसेट का पिक है जो बोहोत खुबसूरत लग रहा है एक तालब के --

एक सुतुर्मुर्ग भी है और बांकी सब मुर्गियाँ हैं मुर्गी मुर्गे सब हैं इसके अन्दर ये सब तैयार हो गए हैं।

ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जो--

और एक आदमी ने दिखाया है।

ये एक हार्ले डेविडसन का शोरूम है जिसके अन्दर एक दो तीन चार पाँच छः--

ये एक सेल्फी पिक है जिसमे छे डॉक्टर --